है | घास दिख रही है | बिजली के तार दिख रहे हैं ।

इसमें फोर व्हीलर दिख रही है। पेड़ पौधे दिख रहे है। कैमरा दिख रहा --

इसमें पेड़ पौधे दिख रहें हैं। आसमान दिख रहा हैं। रेलिंग दिख रही हैं सीढ़ियां दिख रही हैं।

आसमान दिख रहा है घास दिख रहा है औरत दिख रही है।